इसके सामने चार व्यक्ति बैठकर है। और यह व्यक्ति इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं।

इस तस्वीर में सामने एक व्यक्ति नजर आ रहा है इसके पीछे एक स्टेशनरी का दुकान है जहां बहुत सारी किताबें --

इस तस्वीर में सामने एक व्यक्ति नजर आ रहा है। जो वास्कोट पहनकर है इसके आसपास बड़े-बड़े पत्थर गिरे हुए है।

इस तस्वीर में सामने जमीन पर कुछ लोग मछलियां काट रहे हैं सामने दो व्यक्ति नजर आ रहा है जो मछली काट रहा है।